यह एक जिम है जिम में लोहे की मशीने रखी है फर्श में लाल कलर के --

यह एक दुकान है दुकान में काफी सारा सामान रखा है।